इस तस्वीर में एक नदी दिख रही है जिसके कोने में--

दुसरे ने व्हाइट कलर का पेंट और व्हाइट शर्ट पहना हुआ है इस दुकान के आगे दो बोर्ड लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी कुर्तियां लटकी हुई हैं कुछ जैकेट लटके हुए हैं और एक येल्लो कलर का ड्रेस भी लटका हुआ है।

इस पिक्चर में एक दुकान दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का है।

इसका दुकान में बहोत सारा खाने का चीज़ लोग लगा हुआ है।

नदी का किनारा रेस्ट कर रहा है ये मगरमच्छ का साइड में--

हरा भरा ग्रासेस भी दिखाई दे रहा है और पानी का कलर जो ग्रीन लग रहा है।

यहां पिक्चर में पांच लोग दिखाई दे रहा है जिनमें से चार लोग बैठा हुआ है और कुछ लाल कुर्सी भी लगा हुआ है यहां।

इस पिक्चर में एक ब्राउन कलर का झोपड़ा दिखाई दे रहा है।

पटाखों के पीछे कुछ औरतें सफेद साड़ियां पेहने हुए खड़ी है।

इस तस्वीर में एक सफेद कलर का दुकान दिख रहा है जिसके ऊपर सफेद और ब्लू कलर में।

ये पिक्चर में बहोत सारा इंसान लोग दिखाई दे रहा है एक छोटा लड़की भी दिख रहा है जो की सफेद कलर का फ्रॉक पहन के रखा है।

एक बोर्ड है ब्लू कलर का जिसमें जोइस पेट चॉइस ए कंपलीट पेट स्टोर लिखा हुआ है।

एक इंसान जो हाथ में फोन पकड़ के फोटो खींच रहा है।

इस पिक्चर में कुछ लोग दिख रहे हैं जो की टहल रहे हैं नदी के किनारो में।

इस पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की ग्रे कलर का पैंट और नेवी ब्लू कलर का टीशर्ट पहन के लकड़ी का झाड़ू से झाड़ू मार रहा है।